मार्केट है मार्केट के अंदर एक रिक्शा है रिक्शा का कलर ग्रीन है।

ये स्कूटी है स्कूटी का कलर ब्लू है बाइक है बाइक का कलर रेड है।

बेड शीट है बेड शीट का कलर व्हाइट है दरवाजा है।

चर्च है चर्च के अंदर बहोत सारे पोस्टर लगे हुए है।

स्कूटी है स्कूटी का कलर ब्लैक है एक आदमी है ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है।

गद्दा है गद्दा का कलर रेड है ब्लू है।

उसके बगल में एक साइकिल है जिसका कलर ब्लैक है।

छत है छत के ऊपर रड लगा हुआ है रड का कलर सिल्वर कलर का है।

गेट है गेट का कलर रेड है स्कूटी है स्कूटी का कलर व्हाइट है।

क्लासरूम है क्लासरूम के दीवारें वाइट है रेड है पर्पल है।

बाहर में बुलेट है बुलेट का कलर रेड है ब्लैक है सिल्वर है।

मैरेज हॉल है व्हाइट कलर का दीवार है ग्रीन और येलो कलर से डेकोरेट किया गया है।